दूसरी दुकान के बाहर एक औरत बैठी हुई है और वो कुछ सब्जी बेचती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर सामने की तरफ एक औरत खड़ी हुई है जो अपने मुँह पे मास्क लगाए हुए है पीछे की तरफ भी कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर बहुत ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिये टंकियां रखी हुई है और यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए दिख --

दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिये ये एक बस खड़ी हुई है। बस के ऊपर एक लड़का चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिये बस के पास में भी कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है। बस के पीछे की तरफ बिजली का एक खम्भा दिखाई दे रहा है और उसके किनारे के तरफ कुछ दुकाने भी दिख रही है।

दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिये ये एक अस्पताल है जिस पर लिखा हुआ है पचास बिस्तर मात्र एवं शिशु अस्पताल सुकमा जिला सुकमा यहाँ पर देखिये फूलो के सजावट है और यहाँ पर देखिये जमीन में हरे रंग का मेट बिछा हुआ है।

दृश में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिये ये एक बहुत बड़ी सी फल की दुकान है जिसमे की देखिए सेब संतरे अनार काले अंगूर और हरे अंगूर रखे हुए है यहाँ पर देखिए कुछ फल टंगे हुए भी दिखाई दे रहे है।

बड़ा-सा ड्रम भी रखा हुआ है यहाँ पर एक ड्रम रखा है जिस पर की एक औरत बैठी हुई दिख रही है ।

जैसा कि इस दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर ये एक डीप फ्रीजर रखा हुआ है जिसमें कि देखिये बहुत सारे ये पैकेट रखे हुए है और यहाँ पर इसमें दो केक भी रखे हुए है एक पीले रंग का केक जिस पर की फूल बने हुए है और एक रंग --

इस दृश्य में हम देख पा रहे है ये एक वाटर पार्क है यहाँ पर देखिए पानी में एक झूला लगा हुआ है किनारे की तरफ टीन सूड पड़ी हुई है और दूर--

दृश्य पर हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिये सामने की तरफ स्टेज बना हुआ है और उस पर परदे लगे हुए है दिवार पर एक ए सी भी लगा है यहाँ पर एक आदमी और एक औरत खड़े हुए है सामने की तरफ माइक भी रखा हुआ है जमीन पर कालीन बिछी हुई है |

टूल भी रखा हुआ है बराबर के दुकान में साइकिले रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ बोर्ड भी रखे हुए है बोहत सारी साइकिले टंगी भी है।

जुवान दिखाई दे रहे है यहाँ पर पीछे की तरफ एक टावर भी दिखाई दे रहा है दूर पर बड़े-बड़े से पेड़ भी दिख रहे है नदी में बहुत सारी नाव पड़ी हुई है बिच में एक खंभा भी लगा हुआ है जिसमे लाइट लगी है |--

तरफ एक लड़का बैठा हुआ है जिसने अपने मुँह पर पुरे में क्रीम लगाई हुई है और वो हाथ में मोबाइल पकड़े हुए है सामने एक चश्मा भी रखा है पर्स पर कैंची भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिये एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिसमे में की बिच में एक गुम्बाद हैं दोनों तरफ मीनारे बनी हुई है यहाँ पर --

दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिये ये एक बहुत बड़ा- सा दुकान है जिसमें की अलमारियाँ बनी है अलमारियों में बहुत सारा सामान रखा हुआ है बहुत सारी शिशियाँ बहुत सारी डिब्बे रखे हुए है कुछ पैकेट भी रखे है बहुत बड़ा- सा काउंटर बना है काउंटर के ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं।

खाने का सामन रखा हुआ है यहाँ पर देखिये एक लड़का हाथ में मोबाइल पकड़े हुए दूसरा लड़का कुछ खाते हुए दिखाई दे रहा है एक लड़के के सर पर मफलर बंधा हुआ है।

जैसा की दृश्य में हम देख पाए रहे है ये एक हॉल के बाहर का दृश्य है यहाँ पर देखिये बहोत सुंदर से भू गेट बना हुआ है जिनको बहोत सुंदर-सुंदर फूल से सजाया हुआ है यहाँ--

जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहे है यह एक मस्जिद के अंदर का दृश्य है यहाँ पर देखिये बहुत सारी लाइटे जल रही है यहाँ --

दृश्य में हम देख पा रहे है किसी कारखाने का दृश्य है यहाँ पर देखिये बहुत सारे बुरे रखे हुए है बोरो में सामन भरा हुआ है --

इस ब्रिज में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिये ये बहुत ऊंची सी पहाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर देखिये पहाड़ी पर चहड़ने के लिए ये टेड़े - मेढे पत्थरों के रास्ता जैसा दिख रही है यहाँ पर सुखी --

इस दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ पे देखिए ये एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे की खिड़किया लगी हुई है सामने की तरफ ये शीशे का दरवाजा लगा हुआ हैयहाँ पर देखिए एक इसके बाहर बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है केन्द्रीय विद्यायल सुकमा--